पीछे की तरफ हमें झाड़ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जो की बहुत सुन्दर लग रहे है।

एक अंकल जी का हमें गंजा सा सर दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर हमें बहुत सारे झोले दिखाई दे रहे हैं और बच्चों के और ऊपर के तरफ में आसमान दिखाई दे रहा है।

मौसमी दिख रही है और आगे की तरफ फर्श --